यहां पर बहुत अच्छी-अच्छी चीज है जो कि एक दो गमला में फूल लगे हुए हैं और बहुत बड़ी --

तकिया भी दिख रहा है तकिया में सफेद रंग का और एक रेड का रंग का है और यहां पर साइड में एक पौध भी दिख रहा है और यहां पे --

हेलो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये सामने बहोत बड़ी साड़ी दिखाई दे रही है बिछी हुई है और साड़ी यू चार --

हैलो दोस्तों प्यारे दोस्तों यहां पर बहोत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है और पहली भैंस पर एक--

यहां पे बहुत सारी कसरत करने की भी चीज बड़ी पड़ी हुई है और वो चार पांच कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

हेलो दोस्तो हमें सामने एच_डी_एफ_सी बैंक दिखाई दे रही है उसके बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है वो भी उसके बाहर --

यहां पर बोतल भी दिखाई दे रही है और कुछ बैग भी दिखाई दे रहे हैं और आगे तरफ दो कुर्सी भी पड़ी हुई है एक पेंसिल भी पड़ा हुआ है और दो बच्चे बाहर भी जा रहे हैं।

बहुत बहुत बहुत सारे पौधे बहुत सारे और जंगल से लग रहा है।

कुछ पौधे बहोत बड़े बड़े है कुछ पौधे बहोत छोटे छोटे है और यहां पर इधर सामने की तरफ कोई छोटे छोटे पत्थर भी है और बहोत बड़े बड़े पत्थर भी है और ऊपर चट्टान जैसी बहोत बड़ी --